''हम्म इस दृश्य मे हम देख सकते है ये किसी मेनस पार्लर के अंदर का दृश्य है जिसमे कुछ लोग--''